गेट के सामने मुझे पेड़ भी नजर आ रहा है।

नदी के ऊपर एक ब्रिज भी नजर आ रहा है।

मंदिर के आसपास खुले मैदान में नजर आ रहें हैं।

इधर मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रही है।

टी_वी के सामने एक स्टार भी नजर आ रही है।

मुझे बहुत सारे मूर्तियां नजर आ रहा है।

लड़की के बगल मुझे फूल भी नजर आ रही है।

घर के चारों ओर मुझे फ्लावर पोट भी नजर आ रही है।

इधर मुझे चर्च नजर आ रहा है।

दुकान के अंदर मुझे एक ट्यूबलाइट नजर आ रहा है।

इधर मुझे पांच लड़कियां नाचते हुए नजर आ रही है।

इधर मुझे बहुत सारे पेपर्स नजर आ रहे है।

पेपर से कुछ जानवर की तस्वीर भी नजर आ रही है।

मुझे छत के ऊपर चार सिंटेक्स भी नजर आ रही है।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

इधर मुझे खिड़की भी नजर आ रहा है।

इधर मुझे कुर्सियाँ नजर आ रही हैं।

ये इधर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

मुझे इधर एक बस के पीछे भी दिखाई दे रहा है।

अंदर बहुत सारे सामान भी दिखाई दे रही हैं।

फिर मुझे एक होटल जैसी घर नजर आ रही है।

अंदर में मुझे काफी सारे पॉट्स भी नजर आ रही है।

दुकान में बहुत सारे किताब रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इधर मुझे ये खाली कार्ट पार्ट दिखाई दे रहा है।

इधर स्कूल की दीवार भी नजर आ रहा है।